मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है हरे भरे कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और पूरे सहारे यहा पे मुझे देखने को मिल रहा है सफ़ेद कलर की बिल्डिंग्स बने हुए है हरे मैदान दिख रहे है और कुछ बड़े पर्वत मुझे यहा देखने को मिल रहे है।

यहा पे मुजे एक बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है जीसमे हरी घास मुजे दिख रही है कुछ बड़े पेड़ यहा पे दिख रहे है एक पीपल का पेड़ दिख रहा है पीछे येक टावर दिख रहा है कुछ बड़े पेढ दिख रहे है मुजे।

यहाँ पे एक गेट बना हुआ है और कुछ बाउंड्री बनी हुई दिख रही है कुछ पोल यहाँ दिख रहे हैं कुछ पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर नीला आसमान मुझे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट मुझे दिखाइए दे रहा है और यहाँ कुछ लोहे गेट भी लगे हुये है एक रास्ता जा रहा है अन्दर की तरफ। ब्लँक इन व्हाईट फोटो है।

रहे नीला आसमान सफ़ेद बादल दिखाइए दे रही है कुछ बड़े पेड़ यहां पर लगे दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू रोड दिखाई दे रहा है।

ये किसी डाक केंद्र के सामने का है यहा पे जो कलर किया गया है लाल और सफेद कलर दिखा रहे है ऊपर टॉवर लगा हुआ है।